सामने मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर शीशे की ट्रेन बनी हुई है मुझे यहां पे कोलगेट क्रीम --

इस तस्वीर में मुझे रिकार्डर नजर आ रहा है।

यहां झूले में खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

एक फिश है प्रीमियम क्वॉलिटी फ्रेसमेट लिखा हुआ है।

अं कार्टून में मुझे कुछ के डेंटिस्ट भी दिखाई दे रहे है और आस पास बहुत सारी बिल्डिंगे नज़र आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

जहा पे मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो गाड़ियों को ठीक कर रहा है।

और यहां पे मुझे बाहर से कुछ ल लोग आ अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शीशे के नजर आ रहे हैं और यहां पे कुछ लोग भी मुझे सड़क में चलते हुए नजर आ रहे हैं।

हरे भरे पेड़ भी चारो तरफ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पे बहोत बड़ा लोहे का अं खंभा भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक शॉप नज़र आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है।

हाल में मुझे बहोत सारी टेबल्स और एक चेयर भी दिखाई दे रहे हैं।